यह एक टी.वी की दुकान है जिसमें बोहोत सारी टीवीयाँ लगी हुई हैं तथा शायद ही एक टी.वी इसमें से चल रही है। दो टी.वी ऊपर तथा दो टी.वी नीचे की तथा एक टी.वी दो टी.वी के पास रखी हुई हैं।

तथा उसके ऊपर दो बैंगनी कलर की प्रिंट में तकिये रखे हुए हैं यहाँ पे पड़ोस में दो लाल कलर की कुर्सियां रखी हुई है तथा एक बैंगनी कलर का पर्दा पड़ा हुआ है।

कुछ बातें कर रहा है तथा वो व्यक्ति नीले कलर की बैग पह टांगे हुआ है। यहां पर एक और व्यक्ति पीले कलर की शर्ट तथा नीले कलर का बैग टांगे हुए है।

यहाँ पे एक व्यक्ति बाइक के पड़ोस में खड़ा हुआ कुछ काम कर रहा है।

ट्रे मटके आदि रखे हुए हैं तथा इन सभी के बीच में एक छोटा सा टच वाला मोबाइल पड़ा हुआ होता है। पीछे से एक सफेद टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति खड़ा हुआ है।